और बस स्लीपर होने के कारण इसमें आगे वाला मेन शीशा बहुत बड़ा है और आगे एक व्यक्ति भी खड़ा हुआ है।

एक लोहे के बनी जाली के ऊपर बहुत सारी बनाई गई केवल रखी हुई है।

यह फोटो किसी खिलौने की दुकान की लग रही है।

और इसमें रंग बिरंगे भी नजर आ रहे हैं कुछ तो हार्ट वाले शेप के लग रहे हैं और ये सभी एक शिष्य के अंतर्गत बन रहे--

भोसला सा बनाई हुई बैठी है लगता है कि जैसे अपने अंडों को सेक रही है।

अलमारी बनी हुई है इसके अंदर छोटे मोटे खिलौने रखे गए है और दुकान का अंदर एक काउंटर भी दिखाई दे रहा है।

यह फोटो किसी एक सड़क के किनारे से ली गई है।

यह फोटो किसी जिम सेंटर की नजर आ रही है जिसमें दो तीन व्यक्ति शीशे के सामने--

अलग अलग प्रकार की मिठाईयां रखी गई है और उसके ऊपर एक कंप्यूटर कांटा भी लगा हुई है।

यह एक फलों की दुकान की नजर आ रही है जिसका नाम है जय भैरो फ्रूट्स कॉर्नर ।